यहाँ पर दो इंसान है और एक ने नीले कलर का शर्ट पेहना है और छीट-फुट पैंट और उसने शूज पेहना हुआ है और उसने वाइट और रेड कलर का टोपी भी लगाया हुआ है उसके हाथ में एक रोलिंग मशीन है।

एक इंसान और है जिसने शर्ट पैन्ट और शूज पहना है और उसने टोपी नहीं लगाया हुआ है उसके हाथ मे भी रोलिंग मशीन है और वो छत को पेंट कर रहे-----

यह एक समुद्र के किनारे का इलाका है जहां समुद्र के किनारे में कुछ घेरा हुआ भी है और यह बहुत खुबसूरत लग रहा है समुद्र का पानी डार्क नीला है जो बहुत प्यारा लग रहा है।

यह एक पार्क का सीन है जो बहुत ही ख़ूबसूरत पार्क है। यहाँ पर पेड़-वेड़ है जो पेड़ में लाल रंग के फ्लावर्स भी हैं और यह बहुत प्यारे लग रहे हैं।

खूबसूरत भी लग रहा है चर्च में क्रिस्चन लोग आते हैं वह उनकी धर्म स्थल --

दूर में सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक बड़ा सा स्टेडियम बना हुआ है एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है यहाँ पर लोग हैं और ये सब मैच खेलने क्रिकेट खेलने फुटबॉल खेलने --

यहां सामने दूर में एक घर बना हुआ है जो काफी डिजाइनर है वह ग्रे कलर का है यहां पर का जो फर्श हैं यहां पर पत्थल चरखुट सेफ में है बहुत ही साफ और सुथरा क्लीन है।